अ सिर पे जो मुकुट है वह सिल्वर कलर से पेंट किया हुआ है।

इस नर्सरी में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं यहां पे गेंदे का फूल भी खिला हुआ है।

टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है और टी_वी भी है।

एक चेयर पे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी कटिंग हो गया है।

इस दवाई दुकान में बहुत सारी दवाइयां दिखाई दे रही है।

और गार्डन में ग्रीन घास है।

नारियल के पेड़ के नीचे बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं जो पिंक और वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं।

उस बेंच पे एक लेडिस और जेंट्स बैठे हुए हैं।

जेंट्स जो है वाइट कलर का शर्ट ब्लू पैंट पैर में चप्पल पहना हुआ है और कंधे पे गमछी रखा हुआ है।

जिम सेंटर है।

यह दृश्य किसी स्कूल के प्ले ग्राउंड का है।

सर्कल में लाइन बाई लाइन बच्चे जंपिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

रेड कलर का कालीन बिछा हुआ है।

बहु से लोग का पोशाक जो है ब्लैक कलर का कुर्ता और सीर पे वाइट कलर का टोपी लगा हुआ है।

स्टैंड लगा हुआ है उसमें काफी सारा डब्बा कलरफुल डब्बा रखा हुआ है।

इसके चारों चारो ओर जंगल जंगल दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि मछली वाले का दुकान है।

अंदर में कुछ आदमी है और कुर्सी रखा हुआ है जो वाइट कलर से कवर किया हुआ है।

बगल में एक चबूतरा है और उसमें झंडा लगा हुआ है।

यह पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप मे दो मशीन लगी हुई है।

यह एक प्लेट है इस प्लेट के ऊपर बहुत सारे लीची रखे हुए हैं।

के इस होटल के बगल में एक और दुकान है।

यह दृश्य किसी नर्सरी का लग रहा है।

इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में पार्किंग है।

कॉम्प्लेक्स के जस्ट बगल से काला रोड गया हुआ है।

जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पे दो ऑटो भी खड़ा है।

और इस हाट बाजार में काफी लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है।

झोले भी बिक रहे हैं सब्जी बिक रही हैं।

उसके बगल में डॉक्टर सुबोध कुमार का क्लीनिक है ए_टी_एम के बाहर में काफी लोग लाइन से खड़े हैं।

नेट खेलने का एक टेबल है।

एक बच्चा खड़ा है जो स्विमिंग पूल के पास और जो पोशाक पहना हुआ है वाइट येलो कलर का शर्ट और रेड कलर का पैंट पहना हुआ है।

चेयर के सामने में एक अलमीरा लगा हुआ है।